ज यहीं बनवाना पड़ेगा गाड़ी को --

वो तो कोई स्कूल का है।

कौन से स्कूल का है नहीं समझ नहीं आ रहा है।

ये तो कोई परेड ग्राउंड का लग रहा है यार ह --

छब्बीस जनवरी पंदरा अगस्त का तैयारी कर रहा है परेड ग्राउंड है ये --

अच्छा लग रहा है देखने में भी वाइल्ड लाइफ पार्किंग वाले जगह है और ये समझे गए तो --

ये तो कही का पत्थर वत्थर नाप रहा है यार--

बैठ के अच्छा बातचीत कर सकते है दोस्त यार हमलोग कभी भी गए तो ऐसे शांति से बैठो --

ये तो कहाँ फोहारा ओहारा का लगा रहा है यार--

जाओ यहाँ देख वेख के आओ कैसा जगह है क्या है नहीं कर के --

बेहतरीन लग रहा है पर फीस भी तो ऐसे लेते होंगे।

इलेक्ट्रिक इ रिक्शा इसमें चार लोग है बोलते है बैठ सकते है चलता भी है बोलते है।

इसमें पैसा कितना कमाते होते होंगे यार एक दिन में रोज़ी--

रूम रोड में मजा नहीं आता ये शायद बन रहा होगा ये रास्ता अभी --

डिज़ाइन से नहीं आता भागो साले को अइसे करके लगता हैं मजा नहीं आता।

इसको खीचनें में बहुत आदमी हैं ना बहुत सारे लोगों का जरूरत पड़ता हैं वैसा वाला --

जा के न देखना पड़ेगा यहाँ क्या क्या मिलता है कपड़े में अच्छा अच्छा --

बहुत सारे लेवर एवर लोग भी लगे है काम पे किसी घर के ही हैं और--